इ मन ए मस्त बॉडी बिल्डर हे मस्त मस्त खड़े हे तीन तीन झी हे मस्त खतरनाक दिखात थे एक झी के टोपी तो कई खतरनाक हे हाथ मिलात थे।

आओ केई खतरनाक फोटो हे ऊपर में पटना लिखाए हे आउ ऐति बास के बास हे आउ ऐति साइड मे दुकान हे।